इसमें बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं और एक दो कुछ गाड़ियां पार्क की गई है और इसके--

यह फोटो एक सड़क किनारे कुछ स्कूटियों स्कूटियां खड़ी हैं उन स्कूटियों की फोटो ली गई है और इसके आगे एक --

आसमान में बहोत सारे बादल छाए हुएं हैं और इसके पीछ कान के पीछे एक पेड़ और दिखाई दे रहा--

इसमें एक दुकान बनी हुई है दुकान के बाहर कृष्ण क्लॉथ हाउस शूटिंग सेटिंग ड्रेस मैटेरियल्स का बोर्ड लगा हुआ है।

उम्म लगाई हुई हैं और सामने इसमें चार खिड़कियां बहुत ही अच्छी अच्छी बनी हुई हैं जिसमें शीशे लगे हुए हैं।